ये कोई पुराना स्मारक लग रहा है महल या किले जैसा और काफी पुराने ज़माने और प्राचीन जमाने का ही लग रहा हुआ है ये बना हुआ।

कालीन बिछा हुआ है कुर्सियां लगी हुई हैं और ये यहाँ पे (पर) लोग बैठ के अपना आनंद लेते होंगे और य आगे ये जो फील्ड है ये काफ़ी सपेस्फुल है।

ये कोई घुमने-फिरने वाली जगह लग रही है। इस फोटो को देख के यहीं लग रहा है कि ये कोई महल किला का ये प्रवेश द्वार है और काफ़ी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं सैर-सपाटा घुमने-फिरने के लिए --

पंजाब नेशनल बैंक है। उसके सामने का कैंपस है। यहाँ पे कार खड़ी हुई है। सडक मार्ग है।

पेड़ पौधे काफी जहां रहते हैं हरियाली भी रहती है और अच्छा लगता है देखने में और ये सारी चीजें बहुत अच्छी लग रही।

और ये बहुत बड़ा इसके आगे कैंपस ये लग रहा है खुला मैदान।

चित्र देख के ऐसा लग रहा है जैसे कोई पार्क हो और यहां पर शहर सपाटा करने के लिए भी काफी अच्छी जगह यह मानी जाती है।

ये किसी शादी विवाह का समारोह लग रहा है जिसमें कि वर वधु का फोटो जो है यहां पर चलाया जा रहा है जो कि लोग सारे लोग देख सकते हैं।

को देख के यही लग रहा है कि खेत में सिंचाई उचाई हो रही है एक लड़का है और हमारे जीवन में किसानों का बहुत मुख्य रोल है।